मुझे एक सामने जू दिख रहा है।

और पिछे कुछ मशीनें रखी हुई है और नीचे रेड कलर का शीट बिछा हुआ है।

इसमें कुछ लड़कियां है जो कथक सीख रही हैं और--

जो रंग-बिरंगी कलर की है तीन ग्रीन कलर की है एक रेड कलर की है एक येलो रेड कलर की है।

ये एक मंदिर की इमेज है और इस मंदिर का नाम श्री नागा से नागा चंद्ररेश्वर महादेव मंदिर है।

और एक दरवाजा लगा हुआ है अल्युमिनियम और--

और बहोत बड़ा दिख रहा है होटल रेस्टोरेंट एक आदमी खड़ा हुआ है सामने कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और यहाँ पर कुछ स्प्राइट की बोटल है और कुछ मीठा है और ये कांच से बना हुआ है एक मटका रखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर।

और यहां पर तीन लकड़ी के अह सजाने का दीवार पर चिपके हुए हैं साइड में बुक्स रखी हुई है एक अलमारी है फर्नीचर की।

और यहां बाउंड्री के पास नीचे कुछ झाड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं छोटे छोटे और--

यह एक एयरपोर्ट की इमेज है यहां पर हेलीकॉप्टर दिख रहा है पीछे।

और कुछ सोफे लगे हुए हैं यहां पर सोफो के ऊपर तकिये लगे हुए हैं और सामने एक सिनधरी लगी हुई है पास में ए दो अलमारी है कांच की।

कुछ लड़कियां हैं जो नीचे बैठी हुई हैं डांस के लिए और कुछ लड़कियां ऊपर खड़ी हुई है बीच में एक लड़का झंडा लेकर खड़ा हुआ है वाइट शर्ट में।

और कुछ डाइनिंग टेबल भी दिख रही है और कुछ चेयर दिख रही बैठने की।

यहां पर कुछ लोग गेम खेल रहे हैं और कुछ जेंट्स लोग हैं।

दो काउंटर दिख रहे हैं उस पे दो लैपटॉप रखे हुए दिख रहे हैं और दो चेयर लगी हुई दिख रही है।